और ये लोग पीला वस्त्र वाइट वस्त्र पहने हुए हैं।

ये रूम है इसमें चार-पांच सदस्य दिख रहे हैं।

ये चर्च मंदिर है चर्च है क्या है?

और इस में दो डोंगे है दो झने इंसान है और डोंगा चला रहे है।

अपार परदे लगे हुए है आसमान भी दिख रहा है हरा हर पेड़ पौधा भी दिख रहा है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे है।

वाइट कलर पीला कलर और गुलाबी कलर का है आजकल सितारा --

और गेट दिख रहा है नीला कलर का है ।